यह एक बक्सा है और यह बक्सा बहुत ही बड़ा है। इस बक्से का रंग ब्राउण्ड कलर और सादा कलर का है।

यहाँ लोग बहुत दूर-दूर से इसे देखने के लिए आते है और यहाँ इसी से अपना गुजारा बसारा मछली पकड़ के चलाते हैं ।